यहां पर बहुत सारे गेट भी लगाए गए हैं और एक घड़ी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक औरत भी है जोकि सारे पेड़ पौधे में पानी दे रही है।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

यहां पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे एक सैलून का मालिक है तथा एक कस्टमर है जोकि अपने मूंछों को सेट करवाने आया है।

यहां पर एक पौधा भी है बहुत बड़ा सा तथा यहां पर एक टी_वी भी लगाया गया है जिस पे कुछ मूवी चल रहा है।

एक कोयल रिवर का दृश्य है।

और यहां पर गुलाबी और उजला कपड़ा से डेकोरेशन किया गया है।

कई सारे पेड़ पौधे भी है हरियालियां भी है।